इसमें कई चीजे दिखाई दे रही है।

काला दरवाजा भी एक है और बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीज भी रखा गया है और --

ये पुल लोहा से बनाया है।

यहां में बहुत ज्यादा किताब दिखाई दे रहा है।

ये उसका सामने सामने में भी पेड़ पौधा लगाया हुआ है।